यहाँ पर कुछ लोग खड़े होकर चाय पी रहे हैं साथ-साथ लोग अपने-अपने कामो में बिजी लग रहे --

एक घना जंगल है इसमें एक --

जादा आ पूंजी वाला दुकान नहीं दिख रहा है।

ये बहुत एक अच्छा सेल्फ स्टोर लग --